सामने एक मोटरसाइकिल लगा हुआ है मेन गेट है जो दोनों दोनोंतरफ से रास्ता है।

ये कोई वो मछली मछली जहां बिकता है वो जगह है।

इसमें ऑरेंज और सारे कलर का मिक्स किया उनका ड्रेसेज है।

एक लेडीज पानी के नीचे ऑरेंज कपड़ा में घुस गई है दो वो दोनों भी लेडीज ऑरेंज में --